पेड़ है एक एक है लोहे का--

लड़कियों ने मुकुट पहने है सिर पर--

जिसके आगे बड़े ही बड़े--

कुर्सियां मेज है माजा का फ्रिज है।

खीरा मूली मटर गाजर सब है बेचने और खरीदने वालों की--

डी_एस_पी सोडा और कॉफी शॉप है।

एक गमला है फूलों का और लाइट्स लगी हैं।